यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर का पिलर रखा गया है इसके आस-पास दीवारों पे भी बहुत सारे मूर्तियों की तस्वीर बनी हुई है| यहाँ पे बहुत सारी मुर्तियां बनी हुई है| मूर्तियों के हाथ में सांप जैसा आकार भी बना है|

एक मा ये एक मुंशी लाल आर्य महाविद्यालय लगा हुआ सब यहां पर बना हुआ इसमे यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है जिस --

नीले रंग से रंग किया गया है पास में यहाँ पे दो-तीन और मूर्तियां रखी हुई है यहाँ पे दिवालो में एक मंत्र भी लिखा हुआ है ।

ठरकी मूर्ति है और मूर्ति की दोनों ठुमब मे टेर शेर की तस्वीर भी बनाई गई है साथ ही साथ ऊपर मे बोहोत सारे घेरे भी किए गए है और यहा पे।

ये एक स्कूल है स्कूल को सबसे सफेद ज़्यादा और ऑरेंज से रंग किया गया है बाहर कुछ लोग भी खड़े बाहर चार लोग एक जगह खड़े और दूर से दो लोग जा रहे है यहा पे एक बाईक भी खड़ी है।

यहा पे पूरी प्लास्टर की गयी है आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे भी है ऊपर आसमान नीला रंग का जिसकी सफ़ेद रंग की बादल की परछाई दिखाई दे रही है।